यह एक मैदान हैं। ये मैदान में बोहोत सारे बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे बोहोत सारे घास भी हैं। ये खेलने की जगह बोहोत सुन्दर हैं। यहाँ पे झूले लगे हुए हैं।

जिम में अपने शरीर को फिट रखती है बोहोत सारे आदमी जिम में आये हुए है काफी सारी मशीन है बोहोत सारे आदमी --